यह एक फटाके का दुकान है। फटाके के दुकान में बोहोत सारे फटाके के बो --

दो ऋषि मुनिओ की मूर्तियां --

जैसे की मै यहाँ देख सकती हूँ की यहाँ एक कार सर्विस सेंटर है।

बेचने के लिए रखी हुई है।

जैसे की मैं यहां देख सकती हूं कि यहाँ एक पूजा विधि चालू है पूजा विधि के दो ब्राह्मण बैठे हुए हैं।

जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ यहाँ एक बालाजी फायर वर्क्स करके एक --

जैसे मैं यहां देख सकती हूं कि --

जैसे मैं यहाँ देख सकती हूँ कि --

जैसे मैं देख सकती हूं कि यहां एक बोहोत बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है।